रखा हुआ है चारों तरफ पेड़ पौधे और भवन दिखाई दे रहे हैं तथा नीचे घासे नजर आ रही है हरी हरी।

ऊपर की और ग्रिल दिखाई दे रही है जिसपे की एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है ऊपर भी कई दुकान है दुकान है जो की शटर बंद हो रखे है।

उपर किया दुकान की काफी सारे पॅकेट टांग भी रखे है।